सब लोग बैठे हुए हैं और अच्छे से पीछे बिल्डिंग विल्डिंग कोई अच्छा सा एरिया लग रहा--

माता का फोटो है शंकर भगवान का फोटो है हनुमान जी का फोटो है और वहां सब की मूर्ति लगी हुई है।

यह एक कोई गार्डन तालाब किनारे का फोटो है यहाँ पे एक गार्डन भी है यहाँ पेड़ भी लगे हुए हैं बहोत सारे और वहां थोड़ा कचड़ा ओचड़ा भी फेका हुआ है।

यह एक होटल का इमेज है जहां पे उसका होटल का नाम है केरला होटल ।

यहां पे लोग नहा रहे हैं यहां पेड़ भी है।

और यहां पे बहुत सारे पत्थर भी दिख रहे हैं।

और यहां पे दो पेड़ भी दिख रहे हैं।

नाई की दुकान लग रही है।

जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में।